इसें मुझे सिद्धू करके बैनर दिखाई दे रहा हैं यहा पे एक व्यक्ति हाँथ जोड़े खड़े हुए दिखाई दे रहा है। सामने --

एक बाउंड्री वाल दिखाई दे रही है। उसके ऊपर स्टार पैलेस किसी भी शुभ अवसर पर संपर्क करे गाजीपुर मोबाइल नंबर नाइन वन सेवन जीरो --

तस्वीर में एक सैलून दिखाई दे रहा है जिसका नाम --

इस तस्बीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है तालब के बीचों-बीच बहुत सी नाव डली हुई तीन नाव हरे कलर की हैं तो एक नाव ऑरेंज कलर की है और एक नाव --

कलर की दो एल रेड कलर की दो पिंक कलर की नाव दिखाई दे रहीं हैं। नाव में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई नही दे रही है। सारी नाव एक रस्सी से बंधी --

इस तस्वीर में एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। गेट के ऊपर लाल कलर का बैनर लगा हुआ है जिसमे शगुन पैलेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। गेट के सामने एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत सारे --

तस्वीर में ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में बहुत से बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे है आस पास खड़े बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है ।

के सामने बहुत सारी कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जिसके बाहर एक एंबुलेंस भी खड़ी हुई हैं और सामने एक बड़ा सा झाड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा --